बैंक के सामने दो आदमी है।

आदमी के लेफ्ट साइड में एक हाथी है।

फोटो में खड़े खड़े पेड़ पौधे भी देखने को मिला है।

शादी के मंडप से ये फोटो खींचा गया है।

और हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिला गया है।

इस फोटो में एक शॉपिंग मॉल देखने को मिला है।

और एक गाड़ी देखने को मिला गया है।

और बहोत सारा चेयर देखने को मिला है।

तुम्हें तीन गाडी देखने को मिला गया है।

और एक काला रंग का गेट देखने को मिला है।

इस फोटो को एक रूम के अंदर से खींचा गया है।

फोटो में बहोत सारा बांस है।

और एक सागर देखने को मिला गया है।